रेड कलर का रिंग ग्रीन कलर का रिंग व पंखे कलर का रिंग और ब्लू कलर का रिंग नीचे जो मैट बिच्छा हुआ है वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है पीछे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

मुझे एक माला एक दिखाई दे रहा है बिल्डिंग व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है ऊपर मुझे जैसा दिखाई दे रहा है सामने एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है दोनों तरफ़ एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

ऊपर से फिसल ने वाली मशीनें लगी दिखाई दे रही है गोल गोल वाली दिखाई दे रही है एक लंबी वाली दिखाई दे रही है एक गोल घुमने वाली दिखाई दे रही है।

एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड व नीचे मट्ठी दिखाई दे रही है मट्ठी मे कंखड पत्थर दिखाई दे रहे और बच्चो वाली फसलपट्टी दिखाई दे रही है जिसमे से एक बच्चा फिसलता दिखाई दे रहा --

मुझे बच्छों की नुजेनी दिखाई दे रही है जिसपे एक बच्चा छड़ते दिखाई दे रहा है लाल कलर की पट्टी दिखाई दे रही उसके सामने एक फसलपट्टी दिखाई दे रही फसलपट्टी के लिए लड़का सीडियों से चढ़ता दिखाई दे रहा सामने एक --

चारो तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही सामने एक फिसल पट्टी दिखाई दे रही फिसल पट्टी नीले कलर की दिखाई दे रही एक बगल मे भी दिखाई दे रही--

एक गार्डेन दिखाई दे रहा है गार्डन में बहोत सारे बच्चों की फिसलपट्टी दिखाई दे रही है फिसलपट्टी वाले घर जैसे दिखाई दे रहे हैं एक पेड़ दिखाई दे रहा है सामने घास दिखाई दे रही --